ये हमे पसंद नही बिलकुल कलर चेंज है।

ये वाटर ये वाटर पार्क है और वाटर पार्क का अपना ही अलग मज़ा है। यहाँ पे ठंडे-ठंडे पानी रहते क्लीन रहते हैं। स्लाइडर रहते हैं।